कुल दो तीन पुजारी दिख रहे हैं जो पीले कपडे पहन रखे हैं।

प सिनेमा हॉल का पर्दा बंद है और कुछ लोग बैठे है।

और गेट बना हुआ है चार-पाँच।

और गेट में दरवाजा नहीं लगा है। ऊपर मीनारें बनी हुई हैं। चोंगे दिख रहे हैं। नीचे फर्श है पक्का।

अंदर मकान बने हुए हैं। पेड़ हैं लगा हुआ है अंदर। पेड़ की पत्तियां दिख रही --

और एक गेट लगा है जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज बदायूँ लिखा है।

और उसमे ढोलक लगी हुई है लोहे का टावर है।

पक्की रोड दिख रही है मेन रोड और उसमे पेंटिंग है रोड में --

लॉन्ड्री लैब लिखा है।

तीन-चार मूर्तियाँ दिख रही है जो पीले कलर की है उसमे परत चढ़ी है पीतल की।

एक पुरानी सी मंदिर दिख रही है जो खंडहर सी दिख रही है टूटी हुई है।

एक बड़ा-सा मैदान दिख रहा है और मिट्टियाँ दिख रही है। कुछ लोग जमीन में बैठे हैं खाना खा रहे हैं और कुछ लोग खड़े हैं।

और गेट ये कांच का बना हुआ है।

और एक लड़का काट रहा है बाल।

ठेला है। ठेले में कुछ सामान रखे हुए हैंकेला है और अंगूर हैसंतरा है।

एक बगीचा दिख रहा है। बगीचे में पेड़ दिख रहे हैं बड़े-बड़े और एक स्कूल दिख रही है जिसके तीन-चार दरवाजे हैं।

और डंबल टाइप का दिख रहा है।

और कुछ लोग बैठे है कुतियों में।

है एक कुर्सी लगी हुई है सीढ़ी दिख रही है। सेटअप अच्छा है।

फिज़िक्स वाला की एक ब्रांच दिख रही है जिसमे फिज़िक्स वाला --

और बगल में एटीएम है स्कूटी खड़ी हुई है।

और नीचे पानी बह रहा है। नदी बह नदी है। पानी बह रहा है। दिख रहा है।

और घर के बगल में पेड़ दिख रहे हैं बड़े-बड़े। दो ती दो मंज़िला घ माकन है ये --

दरवाजे में पेंट है। दीवाल सफ़ेद कलर का पेंट है। दरवाजे में हरे कलर का पेंट है। नीचे फर्श है।